बने हुए है एक साइड में पेड़ भी लगे हुए है जिनमें ग्रीन कलर में पत्ते भी लगे हुए है।

यहाँ पे के साइड में जो कलर है वो ब्लू कलर में है और यहाँ पे रेड कलर है और भी कलर है पिंक और यहाँ पे नीचे एक चटाई भी पड़ी है।

वहां पर पेड़ भी लगे हुए है और यहाँ पे ऊपर बादल दिखाई दे रहे है जो की व्हाइट एंड ब्लैक कलर में नज़र आ रहे है।

यहाँ पे पीछे बहोत सारे पेड़ ही पेड़ दिख रहे है जिनमे ग्रीन कलर में पत्ते लगे हुए है और यहाँ के छत्त के ऊपर पानी की टंकियाँ भी रखी हुई है और यहाँ पे सामने बालकनी भी बनी हुई है और यहाँ पे नीचे रोड है।

यहाँ के सामने एक बहुत बड़ा होटल बना हुआ है और यहाँ के सामने से खिड़किया भी गिनी हुई है और यहाँ पे निचे पेड़ दिखाई दे रहे है जिनमे ग्रीन कलर में पत्ते लगे हुए है।

यहाँ पे सामने पटरियां बनी हुई है रेल की जहाँ से ट्रेन जाती है और यहाँ पे सामने एक झंडा लहरा रहा है।

और यहाँ पे पीछे दीवाल पे एक बड़ा-सा बाइक का पोस्टर चिपका हुआ है और यहाँ पर जो कलर दिख रहे है वो व्हाइट एंड ब्लैक नजर आ रहे है।